एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रही हैं आसमान दिखाई दे रहे हैं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है काँच का दरवाजा दिखाई दे रहा है एक घर की छत दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक ऑटो दिखाई दे रहा है एक काँच दिखाई दे रहा है।

नीला बोर्ड दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रही है दो दिखाई दे रही है काँच के दुकाने दिखाई दे रही है।